सामने ए_टी_एम बना हुआ है उसमे लाल कलर का रंग है ए_टी_एम पर लाइट वाईट लगा हुआ है चोबिस अवर्स लिखा हुआ--

कुछ लोग अगरबत्ती से पूजा कर रहे हे तो कुछ लोग वैसे ही हाथ जोड़े किसी ने पिले कलर की साड़ी किसी ने नीले कलर की साड़ी किसी ने गुलाबी कलर की साड़ी किसी ने हरे--

पहने हुए सफेद गाजेरी कलर की शर्ट और पीछे बना हुआ है कॉफी जैसा ग्लास जो जो किसका रंग है चॉकलेट --